जो इसका हेयर स्टाईल बहुत अच्छा है ये इस सैलून का दिया गया इक है और ये देख रहे हैं कि सैलून बहुत अच्छा है यहाँ पर हमें कटिंग जिस तरह से आप चाहोगे वैसा बनेगा और ये --

ये दरभंगा राज का कैम्पस है जहाँ की बहुत सारे लोग घुमने के लिए भी आते हैं और बहुत सारे लोग यहाँ पर ये --